यह चित्र एक बनती हुई बिल्डिंग का है।

सड़क में बड़े बड़े खंभे भी लगे हुए हैं और पेड़ भी लगाए गए हैं।

और यहां पेड़ भी लगाए गए है।

यहां बाइक चलाता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

यहां कई सारी खिड़कियां भी बनाई गई है।

और यहां हरी हरी घास भी लगाई गई है।

और यहां एक बड़ा शीशा भी मौजूद है।

यह चित्र एक आंखों के अस्पताल का है।

इसका नाम श्रेष्ठा नेत्र चिक्स्कालय है।

सामने की तरफ रेलिंग भी दिखाई दे रही है।

और गड्ढे में कई सारी ईट को रखी गई है।

यहां हरी हरी घास भी मौजूद है।

और अन्य घर भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कई सारे दरवाजे मौजूद हैं।

यहां पर दुकानदार सामान बेच रहा है और व्यक्ति सामान खरीद रहे हैं।